इधर मुझे कुत्ते के ऊपर ग्रीन कलर की कपड़ा भी नजर आ रही है।

मुझे इधर एक बाइक भी नजर आ रहा।

ये इधर में बड़ा सा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

ये इधर छोटे छोटे घास फूस भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इधर एक जगह दिखाई दे रही हैं काफी सारे छोटे छोटे घर भी हैं।

एक औरत दिखाई रही दिखाई दे रही है एक इंसान के मोबाइल भी दिखाई दे रही है पीछे मुझे--

मुझे इधर एक बड़ा सा जगह दिखाई दे रही है।

पेपर से कुछ बने हुए भी दिखाई दे रही है।

मुझे इधर एक सड़क दिखाई दे रहा है सड़क का ऊपर मुझे पहाड़ दिखाई दे रहा है।

इधर मुझे एक गाड़ी भी दिखाई दे रहा है एक बस भी दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर बहोत सारा कपड़ा लटकते हुए दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के आसपास बहुत सारा छोटा छोटा पेड़ और घास फूस भी है।

और चम्मच दिखाई दे रही है ग्लास भी दिखाई दे रही है काफी सारे टेबल्स और चेयर्स ।

मुझे इधर एक नदी दिखाई दे रहा है नदी का किनार मुझे छोटा छोटा पत्थर भी दिखाई दे रहा है।

और सामने मुझे तालाब भी दिखाई दे रहा है बहोत सारा।

टेबल भी दिखाई दे रहा है वो उसके अंदर काफी सारी मिठाई भी दिखाई दे रही है।

ये लड़की की शॉक्स भी दिखाई दे रही है और उनकी चश्मा भी दिखाई दे रही है।